ये चित्र मा जी हम देख ही सक्दों कि हम ते एक बहोत बड़ी टिहरी झीला दिखेण लगीं यु थोड़ा थोड़ा नीला रंग मा दिखेणी।

एंच हम ते पंखा दिखेण लग्यां लैट दिखेण लगीं भ्वाँ फर्स पर हम ते एक सफ़ेद रंगो कु तोल्या पड़्युं दिखे ओर पोर हम ते जिम मा जी कई मशीना दिखेण लगीं।

भितर हम ते एक हरयां रंग का क-बेड दिखेण लग्युं भैरा हम ते दुई औरतन दिखेण लगीं।

नीसाण हम ते अलग अलग खानों काँच का खानों मा जी अलग अलग तरह की मूर्तिन रखीं दिखेण लगीं भैर मा हम ते दुई मन्खिन बैठ्याँ दिखेण लग्यां।

चित्र मा जी हम देखि सक्दों कि हम ते एक बड़ी झालर की दुकाना दिखेण लगीं।

ये चित्र मा जी हम देखि सक्दों कि हम ते एक बड़ी बारिकी बैगा की दुकाना दिखेण लगीं।